बहुत सी व्हील चेयर रखी हुई हैं होटल ढाबा टाइप सा लग रहा है।

ऐसा लग रहा है कि कोई पार्क है।

यह कुछ बांध के लोग दिखाई दे --